यह बकरी फर्म है यहां पर बहुत सारे बकरी पाले जाते है।

यहाँ पर महिलायें पुरुष पैसा उठा रहे हैं ।

यहां पे बहुत सारे लोग पैसा उठाने के लिए आते है बहुत भीड़ --